जो की फोटो ले रहा है।

उसका हाथ में एक पेपर है।

ना तो स्टूडेंट है ना तो ऑफिस स्टाफ है।

यहां पे ढेर सारा है एक दो तीन चार पांच।

इसमें खाने पीने की चीजें बहोत दिख रहे।

कार्टून है जो कि डसबिन के लिए रखा हुआ है।

ये वो दोनों का शादी है।

और साइड ग्रीन ग्रीन वाला फ्लोर में।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा कुछ फंक्शन चल रहा है यहा--

सामने भी एक लड़का है।

अंदर में खाली खाली है।

उसमें कुछ येलो कलर का चेयर है।

ये जगह लग रहा है किसी होटल या रिसोर्ट का।

और पीछे में एक चियार दिखाई दे रहा है।

माथा पे भी लगाके है।

जोकि हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है सब।

जो कि कुछ फंक्शन का लग रही है।

पिक्चर में एक कंस्ट्रक्शन वाला घर दिखाई दे रहा है जो की कंप्लीट नहीं हुआ है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है शायद किसी दुकान का लग रहा है या घर भी हो सकता है।

दो कुर्सी है वहाँ पे।

यहां पे पांच लोग दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स लोग।

बाकी चप्पल शू ये सब भी दिखाई दे रहा है।

ये बड़ा अच्छा दिख रहा है।

है ये लोग का फेस्टिवल है।

और ये तो बहुत मजा है।

और अलग जगह भी दिखाई दे रही है बस्ती या टाऊन है शायद।

सर ये एक पार्क है।

पिक्चर मे दिखाई दे रहा है कुछ लड़के नाचते हुए--

इसका ऑडियंस बनके देख देख रहा--

पुराना है टु थाउजेंड सिक्सटीन सिक्सटीन का व्यू है।

ये फल का दुकान है।

ढेर सारा हरा भरा फल है।

जो कि बच्चा लोग के लिए बनाया हुआ है।

इस पे ढेर सारा फूल है।

की हाथ से बनाया हुआ है।